की यहां पर एक शादी का मंडप लगा हुआ हैं।

और पास में ही पानी का एक पौंड रखा हुआ है ऊपर तार है और बहुत जल --